यहां बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पे लिखा है बैटरीज परफॉर्मेंस गारंटीड ।

यहां गेतते में बैटरी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां लाइट भी जल रही है जो कि सफेद कलर की है।

यह एक चौराहा है यहां एक बोर्ड भी लगा हुआ है इस पर लिखा है श्री श्री एक हजार आठ मुक्तिधाम मंदिर।

यहां कई सारी कारे खड़ी हुई है जो की सफेद तथा काली कलर की नजर आ रही--

यह एक पेट्रोल पंप है यहां दो ट्रक खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां सामने एक दिवाली जो की क्रीम कलर की दिखाई दे रही है यहां एक सीसा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां दो कुर्सी भी है जोकि ब्राउन कलर की नजर आ रही है।

यहां सीट है जिसपे बच्चे तथा बच्चियां बैठी हुई हैं।

यह एक टेलर्स की दुकान है जिसका नाम बिंदास टेलर्स है।

यहां की दीवालें सफेद कलर की हैं तथा यहां की दीवालों पे सजावट की गई है।

इसमें जाली लगी हुई है जो कि काले कलर की है तथा यहां पक्षी दिखाई दे रहे हैं।

यहां सामने काफी पेड़ पौधे हैं।

जो कि सफेद नीले तथा पिंक कलर के है।

यहां काफी लड़कियां खड़ी नजर आ रही है जो कि काले लाल नीले कपड़ों में खड़ी हुई--

यहां एक बेंच रखा हुआ है जिस पे एक व्यक्ति पीली टी-शर्ट पहने लेटा हुआ --

यहां बाउंड्री भी दिखाई दे रही है जो उसी सफेद कलर की है।